यहां मुझे कुछ पैकेट दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर में मुझे एक रेलवे लाइन दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे--

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे सैंडल दिखाई दे रहें हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक बाल मंदिर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक दरवाजा दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे मुझे कुछ खिड़कियां दिखाई दे रही हैं।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

इस तस्वीर में मुझे एक स्कूटी दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर मे मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ पुतले दिखाई दे रहे हैं।